ठीक है दो कार हैं जो व्हाइट कलर की हैं काफी सारे लोग हैं पानी है यहां पर--

एक लड़का है जिसने ब्लैक कलर टी_शर्ट पहेनी है जींस पहेनी है कैप पहेनी है।

इस फोटो में काफी सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

ककड़ी के पकौड़े चाप के पकौड़े ठीक है।

इस फोटो में कुछ लड़के हैं। सामने लिखा है मिथिला बुक सेंटर --

और यहां पर फोनपे की क्यू_आर कोड लगे हुए हैं।

इस फोटो में सामने लिखा है ओ डी करना।

देखो यहां पे ना काफी सारे जो हैं अह लोग दिखाई दे रहे हैं ठीक है।

और यहां पर अह जो है काम चल रहा है।

इस फोटो में सामने लिखा है विशाखा डेरी पार्लर ।

दिन का समय है सभी के सभी यहां पर लड़के ही दिखाई दे रहे हैं।

एक यहां पर ब्लू कलर का मैट रखा है ग्रीन कलर का कारपेट बिछा है फर्श पर--

और दो लड़के दिखाई दे रहें हैं यहाँ पर--